एक बहुत अच्छा शानदार किसी मंदिर का फोटो जहां पे ये मुझे लग रहा है किसी हरिद्वार का भी फोटो हो सकता है और एक बहुत ही सौंदर्य मंदिर बनाया गया है जो कि यहां रात के फोटो हो सकते हैं यहां पर ये --

फोटो में मुझे एक रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल रखी हुई है उस टेबल के अंदर खाना रखा है साथ चिकन बिरयानी रखी हुई है जिसमें मुझे यहाँ पे चिकन --

पार्क में घूमना बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बड़े बड़े यहां पेडे है यहां पे झूला भी लगा हुआ है जिनमें बच्चे बैठ के झूलते हैं और बहोत एकदम सा अच्छा बिल्कुल बहोत अच्छी हवा आ रही है। पार्क में अब अच्छा लग रहा है देखने में मेरे को ये।

एकदम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे उनके हाथ में कुछ तलवार भी मुझको दिखाई दे रही है यहाँ पे --

आ ये किसी एक दुकान का फोटो छपब दुकान का फोटो जहां पे एक दो तीन चार प्रकार के सप्लीमेंट रखे हुए है ।

इस फोटो में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है और जिसने लाल रंग का बनियान पहन रखा है और जींस पेंट रखे और सफेद रंग के जूते--

ये किसी एक पार्क का फोटो दिखाई दे रहा है मुझको यहाँ पे पार्क है पार्क में बहुत अच्छी अच्छे यहाँ पे फूलवाड़ी है वो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छी तरह यहाँ पे घास पौधे लगे हुए हैं हरियाली है चारों तरफ फूल भी है।

ये किसी शादी समारोह हुआ किसी पार्टी का फोटो है जहाँ पर सामने इसमें दो एक मोर बना हुआ है दो बराबर में यहाँ पे और पेड़ लगा हुआ है ये किसी पार्टी शादी का फोटो जहाँ पे बहुत सारी--

यह बहुत ही किसी कजार कंपनी का एक बहुत ही अच्छा शोरूम है इसमें बहुत अच्छी यहाँ पे साफ सफाई की है इन्होंने--

अं यहां पे इस फोटो मुझे एक अ एक रास्ते का फोटो जहां पर दो तीन दुकान दिखाई दे रही हों यहां पे घर भी बने हुए हैं एक यूनिक डेंटल के या फिर दांतों की दुकान है यहां पर ये--

फिजिक्स वाला एक जो टीचर है जो कि बहुत अच्छा पढ़ाता है बच्चों को यू ट्यूब पे इसका यहाँ पे फोटो उतर रहा है जिसने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई है पटना लिखा है यहाँ पर--

अअ इस दुकान के अंदर मुझको ये दुकान है जिसमें अअ पेंट किया पेंट किया जाता है यहां पे पेंट्स के डब्बे रखे हुए हैं एशियन पेंट हो गया--

एल_इ_डी भी एक इस पर्दे को लगी हुई है कुर्सी भी रखी हुई है यहा पे इसमे टाइल्स भी यहा पे इसमे लगे--

यह किसी गैरेज का फोटो है जहाँ पर एक चार पहिया की गाड़ी खड़ी हुई है यह वाशिंग के लिए खड़ी है सर्विस के लिए खड़ी हुई है इसको यहाँ पे धोया जाएगा जो भी इसकी--

गैस रखी हुई है गैस का पाइप यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है और यहाँ पे बाइक को इसको धोया जाएगा अब इसको नहला दिया जाएगा--

यहाँ पे सभी प्रकार की पैन है पेंसिल रबर कटर इरेजर बैग बस्ता कॉपी पेन किताब सारी चीजें स्टूडेंट के लिए मिलती है यहाँ पे ड्रेस जूते शूज --

सामान रखा हुआ होगा उसमें उन अलमारियों में और यहाँ पे किसी ये बहुत अच्छा कॉलेज का फोटो एक लड़की ने कैप रखी है और व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है अपनी बहुत अच्छा फोटो भी--

और यह दुकान है जिसमें एक रेड रेड कलर में हेवर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एल_ई_डी बल बलब भी रखे हुए हैं मुझे लगता है कि हैवर्स एक कंपनी का नाम है जिस पे--

अच्छी साफ सफाई हो जहां पे सबलोग खाना खाने के लिए आते हैं चम्मच भी रखी है यहां पे स्पून में अ--

और ये एक हरिदासपुर सेंटर के नाम से एक बहोत बड़ी दुकान यहां पे अंधेरे में रात का फोटो यहां पर ये--

यहाँ पे एक पेप्सी का फोटो उठ रहा है एक व्यक्ति यहाँ पे रात को बैठ कर के फोन चला रहा है और यहाँ पे पैप्सी का फोटो उठ रहा है और यहाँ पे इन्होंने एक अपनी--

सुबह सुबह यहाँ पे योगा कर रहे हैं यहाँ पर ये दो और दो से एक पांच बच्चे यहाँ पर अलग-अलग अपनी मैट पर बैठकर योगासन कर रहे हैं।

और एक यहां पे दीवार पे मछली उतर रही है साली यह पे ए_सी भी लगे हुए है यहां पे पंखे भी इसमें बल्ब भी लगे हुए यहां पे इसमें--

यहाँ पर भी एक और दुकान है यहाँ पे हम सब बढ़िया दुकान है किरिया ना किए किरिया में सभी सामान मिल जाता है हमको खाने--

अरे यह क्या इस फोटो मुझे एक बहुत अच्छा हिरण दिखाई दिया जो कि छोटा सा बच्चा हिरन का है।

यह किसी अ बहुत अच्छे साइंस की अ साइंस के रूम का फोटो यहाँ पे लगता किसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का फोटो यहाँ पे एक मशीन रखी हुई है जो कि--

और पहाड़ी का यह बहुत ही अच्छा भयानक सीन यहां पर कोई व्यक्ति चढ़ चढ़ते समय गिर भी सकता है लगता है किसी पता नहीं किसी पहाड़ों में अचानक से बना हुआ जीना है या पत्थर पड़े नीचे यहां पर--